पेड़ दिखाई दे रहा है। पेड़ों पर हरे-हरे पत्ते लगे हुए हैं। बीच में एक पिलर दिखाई दे रहा है।

ये एक सटेचू का दृश्य है जहा पर सामने की तरफ एक मिरर लगा हुआ है मिरर में कुछ लड़किया है जोकि लाइन बना के खड़ी हुई है।

इस मे गुलाबी रंग का --

इसके पीछे कप साइड ड्रम रखे हुए हैं। ड्रम जो हैं वो हरे रंग के हैं। उसके अन्दर का जो सतेहव है सफेद रंग की है। काफी मात्रा मे लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं।